पिक्चर में एक सुंदर सा रूम दिखाया जा रहा है।

उसके बगल में लिखा हुआ है एन_इ_डी सिग्नेज वर्क डन हियर ऐसा करके उसके बाद में चेयर और कपड़े और मैप भी देखने को दिख रहा है।

पिक्चर में एक प्यारा सा सुंदर सा रूम को दिखाया गया है यहां पर एक बड़ा सा बेड रखा गया है और--

इस पिक्चर में हमें एक व्यू दिखाया गया है जहां पर लिखा गया है वेलकम टू मंडे मार्केट जोलांग।

और बहुत सारी स्कूटी भी हमें देखने को मिल रहा है।

के बगल में एक शख्स बैठा हुआ है।

और काउंटर में ऊपर में अलग अलग रंग का कुछ रस्सी रखा हुआ है।

आसपास में एक थर्माकोल का डब्बा भी हमें दिखाई मिल रहा है एक बकेट हमें दिखाई मिल रहा है एक गमला हमें देखने को मिल रहा है।

इस पर बहुत सारे बहुत लंबे पाइप भी हमे नजर आ रहा है साइड में--

अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक लड़का का आगे एक पानी बॉटल भी हमें देखने को मिल रहा है।

लम्भा वाला ट्यूब पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि अभी जल रहा है ऑन है।

और यहां में चेयर और टेबल भी रखा गया हैं। बहुत सुन्दर से ऑर्गेनाइज कि --

केज में बंद करके जू तक में बंद करके रखा गया है।